सामने कांच का दरवाजा लगाया गया है।

और यहां पर एक आदमी बै--

पास कुछ पेड़ लगे हुए हैं और यहां पर कुछ--

जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

मूर्तियां अलग-अलग प्रकार की है और मूर्तियों को सजाया गया--

और जहां कुछ खंबे लगे हुए हैं और जहां पर कुछ गेट --

लगे हुए हैं और यहां पर--